पीले कलर की है और उसके नीचे का डंडा ब्लू कलर का है।

गार्डन के आसपास दिवालय भी है और फुटपाथ भी बना हुआ है।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

ऐसा देखकर लग रहा है की नीचे एक दुकान भी हैं और उसके आसपास--

और एक रनिंग वाली और ऊपर कई सारी लाइटें जल रही है।

इमेज है जिसमें रेलवे ट्रैक दिखाया जा रहा है और एक इलेक्ट्रिसिटी का खंभा भी है।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

बिल्डिंग के ऊपर हिंदुस्तान का तिरंगा लटका हुआ है लगा हुआ है।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

इसमें दिखाया जा रहा है कि एक भैया चाय पीने आए हैं।

की एक गाजरे की दुकान है जो कि रोड पर लगाई गई है।